बिस्कुट का डब्बा है और नीचे एक बैनर लगा हुआ है।

यह एक दुकान है जो कि उसमें बहुत सारा बल्ब मिलता है।

और पीछे बहोत सारा गाछ ब्रिज है।

ब्लू कलर का उसमें टेंट अथी डब्बा रखा हुआ है उसके बगल में एक बाइक है।

यहां निचे में बहोत सारा घास है।

बहोत सारे घास है और आदमी इसमें जा रहा है।

व्हाइट कलर का ऊपर बैलून लगा हुआ है।

का फोटो सब डाल रहा है।